और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ खड़ी हुई है |

का मेडी गार्ड नील कलर का है |

एक बरामदा है जिसमें दो चेयर रखी हुई है |

और उसमें बैलून लगे हुए हैं और लाइट भी लगी हुई है।

जो एक मैनेजर है वो अपने वर्करों को काम बता रहा है |

अपने काम के बारे में समझा रहा है और हर वर्कर ने मास्क प्लस ड्रेस पहन रखी है।

एक शॉप है जिसका उद्धाटन हुआ है।

शॉप के अंदर एक जाकेट टंगी हुई है।

और काउंटर पे येलो और ब्लैक कलर की पेन्टिंग है बाकि चेयर रखी हुई है |

और एक झंडा फहराने वाला स्टेज बना हुआ है |

उसके गेट पे जंजीर टाइप में माला लटका हुआ है |

दरा टाइप में बिछा हुआ है उसके पीछे वॉल पट्टी लगी हुई है ।

एक डांस रूम है जहाँ पे कई सारे बच्चे डांस कर रहे हैं मिरर में देख के |

रेस्टोरेंट में वाइट कलर की चेयर अम्म पड़ी हुई हैं।